तीन मंजिला बिल्डिंग नजर आ रही है गेट के बहार छोटे छोटे गमलो में पौधे लगे हुए है --

गेट के पास बड़ा सा दरक्त भी है।

खंभों में लाइट भी लगे हुए हैं पांच छ खंभे है।

देखिए यहां पर दो आदमी के मुंडी नजर आ रही है।

देखिये ये रास्ता कितनी खूबसूरती से सजा हुआ है बहुत सारे फूल से सजा हुआ है फूलो की --

देखिये इस गार्डन में सुर्कंडी नज़र आ रई है।

बैठने वाला बना है आस पास दरक्त नजर आ रहे है।

एक आदमी एक कार खोलें वो कुछ बना रहा है कार लटकी हुई है सिक्कड़ में --

फुल लगे हुए है पीछे की साईट में--

एक आदमी नज़र आरा है यहा पे दरक्त भी दिखरा है और गिरिज भी बना हुआ ह--

ये देख ये एक चार पञ्च टाइप की बिल्डिंग नज़र आ रही है बिल्डिंग के पास --

दरकतो भी दिख रहा है बिल्डिंग में खिड़किया नज़र आ रई है।

देख्यिये यहाँ पर बोहोत सारे सादे सादे कपडे प्लास्टिक में पैक रखे हुए है वाइट है ब्लू है।

और यहा पर दीवार भी बनी हुई है दरक्त ही दरक्त दिख रहा है।

ये देखिये यहाँ पर बहुत सारी दुकानें दिख रही हैं सफेद दो कार खड़ी हुई हैं और पोस्टर पर--

पंजाबी बुक सेण्टर लिखा हुआ है।

देखिये यहा पर गांधी जी की तस्वीर--

ये देखिये ऐसा लग रहा है ये कश्मीर का नजारा है सफ़ेद सफ़ेद बरफ की चादर दिख रही है सफ़ेद कार खरी हुई है --

चेयर पर बैठे हुए हैं टेबल पर इनके खाने की चीजें रखी हुई हैं लड़कों के चेहरे ढके हुए हैं।

ये सायद यहा पे कुछ पोरोग्राम चल रहा है।

फुलओ का बना हुआ नज़र आ रहा है साइड में रोड दिख रई है वहा पर झंडे है और कुछ लोग इधर उधर दिख रहे है।